जोर का खजूर के बहुत सारे पेड़ है जो हेयर कलर के हैं और अगल-बगल कुछ टंकी भी बने हुए हैं और कुछ घर भी है और एक मैदान भी है जिसमें घास--

गार्डन है गार्डन डीसा ए है जो बड़ा सा गेट लगा हुआ है लालहरे और उसके अंदर कुछ पेड़ पौधे हैं हेयर कलर के--